वाओ कितना सुंदर घर दिख रहा हैं मस्त दिख रहा है यार ये कोई ना बिल्डिंग वगैरह है यह फ्लैट वगैरह होगा किसी अमीर इंसान का उन्ही का होगा।

यू नो शोपीस का दुकान है जिसमें जो गमला वगैरह जो आर्टिफिशियल गमला वगैरा रहता है पत्ती वगैरा रहता है वही दुकान है।

कहां लेंगे तो भी ऐसा दुकान वगैरा रहता है शॉप से हम लोग आर्टिफिशियल ले सकते हैं सजावट का सामान और गमले वगैरा आर्टिफिशियल कभी रखा हुआ है यहाँ पे--

ये बहुत पसंद आता हैं और कभी-कभी क्या होता है कि कुछ जो चॉकलेट खाते हैं उनके फेवरेट से रहते हैं जैसे ऑरिओ बिस्किट हो गया कैडबरी मिल्क वगैरह--

इस जमीन में कम से कम छे फुट का गड्ढा छे या सात फुट का गड्ढा खोदते है ताकी वो नींव को डाल सके अगर इन पे वगैरह कुछ आता है।

ये बाड़ी का हैं अ मतलब जो उम्म पौधे हैं जैसे मिर्ची हो गया मिर्च हो गया और टमाटर हो गए तो क्या--